ये ए.टी.एम. है ये ए.टी.एम. बहुत ही अच्छे ए.टी.एम. लग रहे हैं ये ए.टी.एम. के सामने बहुत सारे गाड़ी लगा हुआ है।

नदी में बहुत पानी है नदी के आसपास जंगल पेड़ पौधे लगा हुआ हैं।

शादी की यहाँ पे शादी हो रहा है। यहाँ बहुत सारे आदमी आए हुए है कुछ आदमी बैठे हुए है कुछ आदमी खड़े है यहां पे समर बनाया जा रहा है। समर देखने में अच्छा लगता है बहुत सारे कुर्सी भी लगा हुआ है।

एक घर बनाया जा रहा है या घर बहुत अच्छे से बनाया जा रहा है बहुत ही अच्छे से ही काम चल रहा है यह ज खड़ा है यह ठेकेदार है जो कि अपना काम देख रहे हैं।

यह डॉक्टर बहुत ही अच्छे डॉक्टर यह हॉस्पिटल बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल हॉस्पिटल में बहुत सारे बेड सब लगे हुए है हॉस्पिटल देखने में अच्छा हॉस्पिटल --

यह स्टेशन है यह स्टेशन बहुत ही बड़ा स्टेशन है यह स्टेशन देखने में बहुत अच्छा लगता है यह स्टेशन पे बहुत सारे आदमी सब आए हुए हैं यह स्टेशन का अच्छा लगते हैं इस स्टेशन पर बहुत सारे आदमी सब है।